यहां पर दिवाल कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारी कुर्सी दिखाई दे रही है और एक ऑफिस का--

फोटो है यहां पे पिंक कलर के पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं हे यहां छत पर कुछ पंखे लगे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर रेड कलर का कार्पेट लगा हुआ--